सामने एक टीचर दिखाई दे रहा है टीचर हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा है बच्चे सामने डांस कर रहे है कुछ बच्चे - सा ऊपर डांस कर रहे है कुछ बच्चे नीचे डांस कर रहे है।

यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है लड़के ने ब्लैक बैग टांगा हुआ है एक लड़का रेड टी-शर्ट में खड़ा हुआ है उसने ब्लू बैग टांगा हुआ है यहाँ पे काफी सारी बुकस की बैराइटी अलग-अलग दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ पेड़ नजर आ रहे है यहाँ पे काफी सारे पेड़ पड़े दिखाई दे रही है पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारे पेड़ और छोटे नजर आ रहे हैं।

पीछे काफी सारे लाइट दिखाई दे रही है पीछे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है पीछे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है पीछे काफी सारे लोग कुर्सी पे बैठे नजर आ रहे है ।